पीछे मकान भी है आगे ट्रेन के ठहरने के लिए पटरी भी है।

एक दूसरे के ऊपर बहोत सारे समान रखे गए हैं।